ये पार्क है और यहाँ पर बहुत ही प्यारा बैठने के लिए --

लाइनिंग पे अ बनाया गया है ए जिसके माध्यम से हम एन्जॉय कर सकते है और बहोत सारी--